और ये घर व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ हुआ है।

और यहाँ पे बांस भी है और बांस का यहाँ पे कुछ छोटा सा पाला भी है।

आगे रखा है और बाल सेविंग करा और आस पास में बहुत अच्छा सा सजाया हुआ--

ये एक गेराज है और गेराज इसमें मोटरसाइकिल रिपेयरिंग किया जाता है।

और आस पास में बहुत सारा आदमी--

एक यहां कपड़े का दुकान है और दुकान का ऊपर में बहुत सारे क्वालिटी के कपड़े रखे हुए है। साड़ी वैगेरा रखा हुआ है।

और अंदर में खटा लेख बना हुआ हैं।

और आगे में सड़क है आना जाना आदमी का--